यह एक मंदिर लग है और नीचे म म वो हैं ऐफ क्स और बगल मैं ग्रिल्लिंग हैं सामने कुछ मकान बना हुआ हैं यहाँ पर अँधेरा सा भी हैं बगल मैं खम्बे भी हैं।

दीवालो पर लाल रंग हैं | उसके नीचे पीला है और एक अ दो नहीं एक --